इस पिक्चर में मुझे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। सामने की तरफ मुझे सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

सामने की तरफ दरवाजा दिखाई दे रहा है दरवाजे का कलर मुझे चोकोलाटी दिख रहा है।

खिड़कियों में ब्लैक कलर के कांच लगे हुए हैं। नीचे की तरफ मुझे --

आ एक खम्बा भी दिखाई दे रहा है। जिस पर लाइट्स लगी हुई हैं आस-पास मुझे शॉप दिखाई दे रही हैं।

जोकि व्हाइट कलर का है। ऊपर मुझे पंखा दिख रहा है जोकि ब्लैक कलर का है। इसमें चेयर्स दिखाई दे रही है जोकि रेड कलर और ब्लू कलर की दिख रही हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक मैंदान दिखाई दे रहा है इसमें मुझे चुँना पड़ा हुआ दिख रहा है जिससे लाइन बनी हुई है।

बीच में मुझे सीधी आआ मिट्टी की --

नीचे की तरफ एक लड़का खड़ा हुआ है। जिसने येलो कलर का टीशर्ट पहना हुआ है। पीछे की तरफ मुझे दरवाजा दिख रहा है जोकि काँच का दिख रहा है।

टी शर्ट और जो पेंट पेहना हुआ है। अ सामने की तरफ कुछ खिड़की दिखाई दे रही है जो कि ओरन चोकोलाटी कलर की है।